यह एक चावल का ढ़ेर है।

यहां पे तीन चार गाय के बच्चे दिख रहे हैं।

को रखने के लिए चारों ओर से घेरा बनाया गया है।

यहां पे दो तीन लोग खाता खाते दिख सकते है।

यहां एक सीढ़ी दिख रही है।

यह एक पार्क दिख रहा है जहां पर चलने के लिए रोड बनी है।

यहां पे पिंक कलर के परदे से सजावट है।

यह एक घर बन रहा है।

यहां अनेक प्रकार की कॉपियां पेन मिल सकती हैं।

यहां पर पीछे कई साड़ी चाबियां के गुच्छे दिख रहे हैं।

यहां हिरण अपनी भूख को मिटाते हुए पत्ते खा रहे हैं जो की बहोत आकर्षक लग रहा है।

यहाँ पे कई सारी पेड़ पौधे हैं।

यहां पे बहोत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

यहां साइड में एक वॉश बेसिन टाइप है जहां पर लोग पानी के से हाथ मुंह धो सकते हैं।

सामने एक बॉक्स बॉक्स लकड़ी की बॉक्स भी रखी है।

यहां पे कई सारे पत्ते हैं।

हाथ में पवित्र जल भी भर रहे हैं।

यहां पुरुष कपड़ा भी पसारा है।

इन्स बच्चों में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं।

और ये स्टूडेंट भी कुर्सियां और टेबल देख सकते हैं।